कॉन्वेंट है वो स्कूल और वहां पे हरे भरे पेड़ लगे हुए है काफी सारे लोग खड़े है बाहर।

यहां पे बैग वैग रखे हुए हैं काफी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें है।